टेबल पर पानी बोतल भी रखा हुआ है। बोतल के सामने क्लींजर का बोतल भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा एशियन पेंट्स का डब्बा दिखाई दे रहा है।

और इस तस्वीर में हेयर सैलून का बिल्डिंग का एक कमरा दिखाई दे रहा है।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

बाइक पर हेलमेट भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में काला चेयर भी दिखाई दे रहा है।

सामने वाले टेबल पर बहुत सारा बुक्स और एक कटोरी भी रखा हुआ है।

और सामने मे स्टील का चैन भी लटका हुआ हैं।

केक में बहुत सारा हार्टशेप से बना हुआ दिखाई दे रहा है।

पास बहोत सारा गाड़ियां और स्कूटी बाइक भी दिखाई दे रहे--

ऊपर में सफेद बादल भी दिखाई दे रहा है।

सामने में बाइक भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारा लोग भी दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी का हाथ में हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।

हमको इस तस्वीर में दो हिंदू का मूर्ति दिखाई दे रहा है।

आस पास में बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

हमको इस तस्वीर में बिल्डिंग का एक रूम का हिस्सा दिखाई दे रहा है।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

सामने में एक बड़ा सा अलमारी भी रखा हुआ है।

सामने में तीन कुर्सियां भी दिखाई दे रहा है।

सामने में शिशा भी दिखाई दे रहा है।

कोई तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

सामने में डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी लिखा हुआ है।

और सामने में तीन आदमी भी दिखाई दे रहें--